और छतरी में कुछ जगह ढकी हुई है बाकी ऐसी ही है।

पेंट पहनी हुई नीले कलर की वाइट कलर की शर्ट है उस पे डिजाइनिंग हुई है।

और बाहिर खंभे खड़े हैं दो दरमियान में ट्रांसफर में पड़ा है और साथ जमीन भी है और जो बाहिर है रोड है वो कच्ची है।